जो शफेद रंग का कुर्ता है उसमे आठ बटन है और कुछ मोती जड़े हुए है और गोल्डन कुरते मे उसमे भी आठ बटन है जिसमे कुछ मोती जडे हुए है बगल में एक टे--

एक छोटा-सा पूल है जो बहोत पानी भरा हुआ है दो आदमी खड़े हुए है सफ़ेद रंग के ड्रेस पहने हुए बड़ा-सा बिल्डिंग जो सफ़ेद रंग का है उसके निचे एक छोटी सी कुर्सी रखी हुई है जिसके ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है।

सामने एक बड़ा सा दरवाजा है जिसपे कांच लगी हुई है बगल मे एक तख्ताा रखा हुआ है बगल मे दो पेटी रखी हुई है अलमारी औ बगल मे छोटा सा बॉक्स रखा हुआ हैं जिसपे कपड़ा लटका हुआ है।

और बगल से सीढ़ी गयी है सामने एक साइड पे भी एक और अंदर का दरवाजा है उस पे भी कांच लगी गयी है।

सामने मंदिर है जो भूरे रंग की है गुंबज बना हुआ--

और अंदर जाने के लिए ऊपर एक छोटा-सा छतरी टाइप पे बनाया गया है जो लाल रंग की पट्टी है सामने एक अशोक का पेड़ लगाया गया है बहोत सारा जो हरे रंग की पत्तियां है।

जो नीले रंग की और एक कूड़ादान भी खड़ा हुआ है जो नीले रंग का है और सामने के साइड पे क्रीम कलर का है एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया हैं।

जोन कैमरा लगा हुआ है सामने एक ऐसी लगाई गयी है नीचे के साइड मे बोहत सारे बेंच रखे हुए हैं उसके ऊपर बैग रखा हुआ है अगल बगल पोस्टर लगाए गए हैं।

अगल बगल बोहत सारे ऊपर लाइट लगाए गए हैं जो सफेद रंग के छत का जंग रंग क्रीम कलर का और कत्थे रंग का है सामने के साइड पे पोस्टर लगा है जो पोस्टर पे लाइट जल रही है एक कुर्सी रखी हुई हैं।